बारे में फोटोस है और उसके सामने एक स्क्रीन रखी हुई है टेबल के ऊपर।

और उन दुकानों के अंदर बैठने की जगह है पानी की बोटल्स है ऊपर के इंटिरियर करवा के रखा है शेल्टर्स बना के रखे हैं।

एक लड़का मिरर में अपने फोन से सेल्फी ले रहा है उसके बाल उसने--

और वो बहुत सारी को क्वांटिटी में है और वो कोई तो--

जो कि ब्यूटी हैंडक्राफ्टेड नेकलेस वगैरह बेच रही है बहुत सारे ने--

और आसमान में शा देखकर ऐसा लग रहा है कि शाम का टाइम है और सिर्फ--

एक बाइक भी खड़ी दो बाइक खड़ी हुई है और एक एक्टिवा खड़ी हुई है और एक झाड़ भी लगा हुआ है जिन--

एक पिक्चर नजर आ रही है जिसमें थोड़ी सी ऊंचाई पर एक--

और उस कवर की हुई जगह के अंदर बहुत--

वहां पे अच्छा सा शेल्टर बना हुआ है बहुत अलग-अलग वैरायटी के पौधे हैं।

अ मम्मियां या फिर टीचर होंगी और उस क्लास के अंदर--